देख सकते हैं यहां कोई डेकोरेशन करवाया गया और उधर वहां पर ये थिएटर टाइप का लग रहा है। और इधर यहाँ पर आदमी सब भी है और इधर यहाँ ग्रिल - उरिल भी है और पीछे का बैकग्राउंड येल्लो है ।

बुक स्टोर है और यहाँ पे बहुत सारे आदमी-उदमी भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कितने हैं और यहाँ पे आदमी भी है और ये बहुत ही लग रहा है और बहुत--

ये एस_बी_आई है स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया है और यहाँ पर बोहत सारे आदमी आए हुए हैं और ये पैसा-वैसा के लिए है। और उधर देख सकते घर-वर भी है और बोहत सारे बाइक - वाइक है।

देख सकते हैं ये लड़का है और ये बहुत ही खूबसूरत इसका पोज है-हो- और ये दिन का फोटो है इधर पुल उल भी है और ऐ साइड में पानी ओनी भी है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इधर घांस वांस भी है।